आस- पास के क्षेत्र में बहुत सारे पेड़- पौधें है यह एक रोड के किनारे स्थित है रोड पर एक चलता हुआ व्यक्ति दिखाया गया है।

आस पास अंधेरा दिख रहा है यानी रात का समय है और इसके जस्ट आगे में फर्श बहुत ही साफ सुथरा दिखाया गया है और लाइटिंग अच्छे से की गई है।

इस फोटो में एक बहुत ही सुंदर सा साफ- सुथरा घर को दिखाया गया है।

और इसमें औरतों को भी दिखाया गया है और सभी का ड्रेस वाइट कलर का है।

और आस पास में लाइटिंग बहुत अच्छा से किया गया है बहुत ही साफ सुथरा दिखाया गया है।

उसके ऊपर एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है और इसके गेट में लिखा हुआ है रोहिणी वस्त्रालय।

इस फोटो में एक पैलेस को दिखाया गया है। इसके ऊपर एक डेस्क है। डेस्क के ऊपर क्यू_आर कोड लिखया और छपा हुआ है।

टेबल लगाई गई है टेबल के चारों ओर कुर्सी ही कुर्सी लगा हुआ है।

आस पास में बहुत सारे घास फूस और पेड़ पौधे भी है आसमान साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

आस पास के क्षेत्र मे बहुत बड़े बड़े चट्टान भी रखे हुए हैं आस पास मे पेड़-पौधे भी बहोत सारे है और यह एक नदी भाग का दिखाया गया है।

बहुत सारे कपड़ा प्लास्टिक में बन्द हैं आस पास के क्षेत्र में लाइटिंग की है।

आस पास का क्षेत्र में साफ सुथरा और पेड़ पौधे बहुत सारे हैं घर को भी दिखाया गया आजू बाजू में।

टेशन को बहुत ही साफ सुथरा दिखाया गया है और उसके जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा घर है और उसके ऊपर दो टंकी लगाई गई है।

और उसके बगल में बहुत सारे पेड़ हैं जो की बहोत ही सुंदर दिख रहा है।

ऊपर में दो लईटे दिखाई गई है उसी से आसपास का क्षेत्र उजाला है रात का समय है क्योंकि अंधेरा है।

इस फोटो में एक रोड को दिखाया गया है रोड के दोनों साइड में बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

और इस ए_टी_एम के अंदर में दो व्यक्ति को दिखाया जा रहा है और एक व्यक्ति बाहर से है तो कुछ एक व्यक्ति आधा अंदर घुसा हुआ है।

फोटो में एक ग्राउंड फ्लोर दिखाया गया है जिसके अंतर्गत में एक कार गाड़ी खड़ी है जो कि ब्लैक कलर की है।

इस फोटो में एक बस स्टैंड को दिखाया गया है जहां कि दो से ती बस खड़ी है।

दीवारें भी पेंट की हुई हैंव्हाईट कलर से इसमें एक टेबल को दिखाया गया हैंटेबल के चारों ओर कुछ कुर्सियां लगी हुई है जो भूरा रंग की है।

औरत के जस्ट बगल में एक थैला रखा हुआ है और उसमें कुछ सामान है।

आस पास के क्षेत्र में लाइटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है आस पास का क्षेत्र साफ सुथरा है।